सामने में कुछ कपड़े के दुकान हैं जिनके दरवाजे बंद है।

सामने एक बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है जिसपे लाइट लगी हुई है।

यह किसी प्रज्ञा केंद्र का चित्र है सामने एक दुकान जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

य किसी दुकान का चित्र है सामने में एक काउंटर रखा हुआ है जिसे अलग अलग रंग के गेंदे के फूल से सजाया गया है।

रूम की दीवारों को सफेद कलर से पेंट किया गया है सामने एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है।

यह किसी मंडप का चित्र है सामने में एक पिलर दिखाई दे रहा है सफेद रंग का।